साथ मे दिखाई दे रहे है बहोत सारे--

कुछ कलर जैसे कि पिला दिखाई दे रहे।

और वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीछे की ओर झंडा दिख रहा है।

पीछे की ओर हमे दिख रहा है आसमान का कलर व्हाइट ।

यहां पर दो व्यक्ति सोफे पर बैठे दिख रहे हैं।

पीछे एक व्हाइट कलर का बेड है।

सामने ही जालियां दिख रही है।

कुछ व्हाइट कलर के पिलो दिख रहें हैं।

इसमें की खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें दिखाई दे रही है।